और यहाँ पे हम बहुत सारे जिम इक्विपमेंट्स देख सकते हैं।

और यहाँ पे हम ब्लू कलर का मैट देखते हैं।

बड़ा सा बॉक्स है एक्स साइड बॉक्स ।

ये एक कैफेटेरिया है यहाँ पे काँच का टेबल और दो चेयर देखते हैं और यहाँ पे काले रंग का टेबल है।